ये मोटर साइकिल बहुत सारे खड़े है और आस पास कुछ पेंटिंग बना रहे है।

रात का अँधेरा है लाइटे झल रही है दुकाने सारी नीचे से बंद है।

ऊपर वाली दुकान खुली है ये पंचकर्मा आयुर्वेदिक सेंटर है यहाँ नीचे एक गाड़ी भी खड़ी है और --

और टेबल पे है कुछ कपड़े इस पे टंगे हुए हैं और दागे भी है।

चारों तरफ पेड़ लगा के है और कुछ --

लगा रहे है खेत जो ग्रहे है और एक आदमी खड़ा है।

इसमें बहुत मकान छोटे छोटे हट बना के हैं।

ऊपर से नीचे तक इसमें फटे लगा के हैं।

ये स्कूल की बिल्डिंग हैं चारों तरफ ये बंद है।

कुछ माए चल रही हैं चल रहे हैं स्कूटी हैं।

कपड़ों कि अलमारियां और छोटे बच्चों का बिस्तर और बॅट भी है।

ये बहुत सारे फम्वारे चल रहे है ये बहुत खुबसूरत है इर्द गिर्द इसके बहुत लाइटे है।

और पिछे नेताजी चल रहे है और चारों तरफ लोग --

यह गन पर सिख रहे है निशाना तांग रहे है दो लडकिया और--

ये हवेली है ये दो मंझला हवेली है।

यह बहोत बड़ी सड़क है यहाँ पर यह एरोप्लेन के पास जा रहे है।

कुछ टायरों पे फूक चढ़ाने के लिए हैं और टायर टायर बेच रहे हैं।

यह मंदिर पर लोग चढ़ रहे है कुछ लाइटे जला रहे है उपर झंडा लगाते है।

और आगे जाने का रास्ता भी है।

ये सड़क है दूर दूर तक।

और इसके आगे गाय और स्कूटी और यहाँ से मकान बना के है और दाई तरफ़ दिवार लगा के है।

ऐ इसमें इटो का काम चल रहा है और बहोत सारी इटे और सरिये लगे हुए है।

वाइट कलर की यूनिफार्म लगाके बैंचों पे बैठ के ये पढ़ा रहे है।

यह सिटी प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पर सारे बच्चे अपना हुनर दिखा रहे है।

हैं यहाँ पे ही कार वाश फिनायल वाश --

और पेड़ पौधे लगा रहे पेड़ पौधे लगा के हैं और सूरज चमक रहा है।

इस ज़मीन में पॉलीथिन ऊपर से बिछा के है।

और दो अउरी दाएँ तरफ पौदे लगा के हैं।

ये बहुत बड़े टैंक तीन हैं और यहाँ से --

एक औरत ढेला ले के है एक लाइन में लगा लगा के है और तीन आदमी भी लाइन में है।

ये जिम की मिशीन है यहाँ पे वाइट --

और यहाँ पे एक कुर्सी है और निचे सिमट करके हैं।

चमक रहा है और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं।

इसमें गाड़ियों का गैराज है ये बहुत सारी गाड़ियाँ इसमें बाइकें है।

सलाद के है और एक आदमी वहां पे खड़ा है नीचे पेड़ के पास।

मोटर साइकिल पे गैस सिलिंडर है।

इसमें ये ईंटे लगा रहा है दो आदमी वहाँ पे खड़े है।

ये मंदिर है इसमें चारो तरफ फूल सजाते है और यहाँ पे मार्बल बिछा के है।

ये कृषि विज्ञान केंद्र है।

बीच वाली बच्ची वाइट कलर ब्लू कलर का ट्रॉउज़र लगाके है।

यह बर्फ़ियों की दुकान है यहां पे ढ़ेर सारी बर्फियाँ ये बेच रहे है।